एक फ्रिझर जिसमे विभिन्न प्रकार की केक राखी गई है कुछ केक --

काले रंग की है कुछ लाल तो कुछ पीले रंग की है।

एक पार्किंग एरिया जिसमे कुछ गड़िया पार्क की गई है पार्किंग का एरिया जिसमे कुछ गाड़ी पार्क की गई है। और--

कुछ घासो मे छोटे छोटे फूल खिले हुए है कुछ घास उग चुके है कुछ स्थानो मे घास ही नहीं है।

एक बस स्टैंड जिसमे कुछ बसे दिखाई-- सभी बसे लाल रंग की है।

एक छोटा सा झील से पानी आता हुआ दिख रहा है झील के उस पार है।

छोटा सा पहाड़ है जिसपे बहुत सारे पेड़ पौधे है एक झील के धारा से पानी बहती हुई--

एक व्यक्ति जो टोपी पहना है और बैग रखा हुआ आगे की और चलता जा रहा है।

एक पार्किंग एरिया जिसमे बहुत सारे बाइक पार्क की गयी है पार्किंग एरिया के सामने एक ऑफिस है ऑफिस के आस पास --

ब्लॅक सा मैदान में कुछ बड़े बड़े खंबे लगे हुए जिसमे लाइट लगी हुई है यहा कुछ छोटे कमबे जिसमे नेट लगे हुए --

एक घास का मैदान जिसमे बहुत सारी घास है आस पास कु--

एक मैदान जिसमे एक फूटबॉल रखा हुआ है। फुटबॉल के सामने दो खम्बे गड़े हुए है और खम्बे में एक नेट लगा हुआ है।

थड में कुछ बिस्किट रखा हुआ है काँच का बना हुआ कंटेनर में--

एक मंदिर है जिसके दीवारों पर विभिन्न प्रकार की आकृतीया उकेरी गयी है छोटे-छोटे भगवान के मूर्तिया उकेरी गयी है कुछ महिलाए स रास्ते पे चल रही है।

एक प्रमुख मार्ग जिसमे बहुत सारी गाड़िया आ-जा रही है और कुछ गाड़िया खड़ी हुई है।